साइड मे छोटी छोटी वे अ-अ गुंबन्द आकार की एक बिल्डिंग सी बनाई गई है साइड मे कुछ पेड़ भी है।

यहाँ पर हमे एक चाय का एक बागान दिखाई दे रहा है बहुत सारे चाय के पेड़ लगाए गए है और ये काफी खूबसूरत लग रहे है सामने की तरफ चलने के लिए एक पतली सी रोड दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमे एक बहुत लंबी सी रोड दिखाई दे रही है रोड एक बिल्डिंग की तरफ जा रही है जिस मे बिल्डिंग का एक एंट्री गेट दिखाई दे रहा है गेट के बाहर बहुत सारे पेड़ लगाए गए है।

यहाँ पर हमे एक छोटी सी बच्चों की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो की नीली रंग की है जो की फोरवहीलर है पीछे के साइड दो ऐक्सेलरैटर दिखाई दे रहे है एक ऊपर चड़ने के लिए एक नीचे आने के लिए सामने की तरफ एक--

और एक घर है जिसमे ऊपर काले रंग की पानी की टंकी रखी हुई है यह काफी ऊँचा दिखाई दे रहा है।

ये बहुत ही सुंदर लग रहा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसमें बहुत सारे ऐसे पेड़ लगाए गये है जिस मे फूल आए हुए है ये रंग बिरंगे कलर के है और कुछ लाइटे भी लगाई गई है।

यहाँ पर हमे फलों की शॉप दिखाई दे रही है जिस मे बहुत सारे फल रखे हुए दिखाई दे रहे है जिस मे अनार काले अंगूर केले सेब ऑरेंज --

एक ऑइल टैंक पेट्रोल टैंकर भी खड़ा हुआ है एक आदमी बाइक पर बैठा हुआ है जो की पेट्रोल भराता हुआ दिख रहा है हमे चार पिलर भी दिखाई दे रहे--

इसमे विद्या इंस्टिट्यूट ऑफ इनफार्मेशन लिखा हुआ हैं साइड मे एक बाहर बाइक पार्क की गई है कुछ गार्ड लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर सुखी हुई सी नदी दिखाई रही है नदी मे तीन बोटे पड़ी हुई है जिस मे एक बोट टूटी हुई है और आधी पानी मे डूबी हुई दिख रही है। ]

अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिख दे रहा है सामने कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं और एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो भी टूटा हुआ है और नीचे की तरफ एक ग्रीन कलर का पानी फैला हुआ दिखाई दे रहा है।